दुकान के अंदर काउंटर बनाया हुआ है।

बगल में एक कार लगाई हुई है कार ब्लैक कलर की है।

यहां पर कई सारा गाड़ी का दृश्य दिख रहा है।

बगल में कुछ टेर कुर्स टेबल कुर्सी है।

ढाला के अंदर गुटिया रखी हुई है।

यहां पर कइ सारा सिलेंडर रखे हुए हैं रंग बिरंगे का।

इसमें रेख बनाया हुआ है सेमेंड का--

डब्बा रखा हुआ है लाइटें जल रही हैं।

आलता रखा हुआ है डब्बा में।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

उस पर चाय का दृश्य दीख रहा है।

ऑफिस के अंदर लोहे का बनाया हुआ है रैक ।

जैसे में पीला हो गया ऑरेंज वाइट कलर का।

अंदर में कई सारा गाड़ी लगाई हुई है।

चक्का उसका ब्लैक कलर का है।

ऊपर में चोंगा लगाया हुआ है दो ठो गाड़ी के ऊपर--

बगल में कई सारे बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं घर बनाया हुआ है।

कुछ लाइटे जल रही हैं बीच में।

नीचे में बाइक लगाए हुए हैं ब्लैक कलर का।

यहां पर एक कार का सर्विसशिग हो रहा है।

नीचे में मैट बिछाया हुआ है रंग बिरंगे का--

मेट पिंक कलर का है ब्लू कलर का है ब्लैक कलर का है।

अंदर में कई सारे रैक बनाए हुए हैं।

आसमान में पूरा धुंध छाया हुआ है।

कुर्सी बनाया हुआ है बेड बनाया हुआ है।

कपड़ा है हेल्मेट रखे हुआ है ड्राम है ब्लैडर रखा हुआ है।

इसके ऊपर मैट बिछाया हुआ है।

यहां पर खेत का दृश्य दिख रहा है।

कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे छोटे हैं लगाए हुए।

कुछ ब्लू कलर की है स्कूटी है और रेड कलर की है लाइटें जल रही है कई सारा।

जिसमें एक बड़ा सा स्टेज बनाया हुआ है।

बगल में साइकल लगाया हुआ है।

कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े पेड़ पौधे हैं।

और बगल में बड़ा बड़ा हाता बनाया हुआ है।

बगल में रेलिंग बनाया हुआ है।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

आधा ब्लू कलर का है और आधा व्हाइट कलर की है।

कुर्सी ग्रीन कलर का है वाइट कलर का है।